यह एक बड़ा सा घर दिखाई देरहा है।

और दुकान का दीवाल का रंग सफेद है।

एक ऊपर में एक पंखा का रंग लाल है।

बाहर में एक गाड़ी भी खड़ी हुई है।

यह एक घर है जिसके बाहर कई लोग खड़े हैं।

टेबल का रंग लाल और सफेद है।

ऊपर एक पंखा भी है जिसका कलर काला भी है।